ये एक बगीची नजर आ रही है इसमें उचिक पौधे लगे हुए हैं और सामने एक मकान है.

इसमें एक बाटर पार्क दिखाई दे रहा है इसमें बच्चे के खेलने के--

ऊपर बड़ी पहाड़ियां हैं नीचे पानी है और पिंक कलर का ये सब कुछ दिखाई दे रहा है।

ये यल्लो और ग्रीन कलर की नाब है दूसरी--

में एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है और उसमें एक अ--

इसमें एक पार्क का दिखाई दे रहा है उसमें काफी--

काफी अच्छा इसमें औ इसमें घास है अच्छी घास दिखाई दे रही है।

बगबान को आराध्य करती हुई दिखाई दे रही हैं उसके पीछे भी कुछ महिलाएं बाहर बैठी हुई हैं।

एक ए रुम कमरा दिखाई दे रहा है उसमें दीवार पर--

इसमें एक बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और उसमें एक व्यक्ति हैं जिन्होंने वाइट पजामा कुर्ता पहना है।

ये जिम्म है इसमें एक बच्चा अ एक्सरसाइज कर रहे है।

इसमें ये फूल माला की दुकानें दिखाई दे रही हैं उसमें--